हमें ये गार्डन दिखाई दे रहा है और हरे-हरे पेड़ और हरी घास लगी हुई है।

तस्वीर के अंदर हमें घर के ऊपर लगा हुआ दिखाई दे रहा है ये बोर्ड फर्स्ट क्लिक का--

और हरे-हरे पेड़ अ बड़े और झाड़ियां नजर आ रही हैं।

सड़क नजर आ रही है और लोग हमें दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान में जिसका चेहरा नहीं दिखा दिख रहा है।

दिखाई दे रहा है एक बड़ा काउंटर बाहर रखा हुआ है सीढ़ियां बनी है।

और एक टेबल है जिस पर टेप और पानी की बोतल रखी हुई है।

और कुछ महिलाएं रंगबिरंगे कपड़े पहने हुए साड़ी लहंगा पहने हुए--

हमें गोल घेरा बनाए हुए नाचती हुई दिखाई दे रही है।

और बहुत सारे टायर और बहुत सारा सामान रखा नजर आ रहा है।

और हमें हरी मिर्च ज्यादा रखी हुई नजर आ रही है इसमें।

और दरवाजे भी नजर आ रहे हैं और दो-तीन लोग अंदर खड़े हुए हैं इसके--

और लाइटे जो लगी है वो गुलाबी रंग की है नीचे गुलाबी कारपेट दिखाई दे रहे--

एक बिस्तर पर दो क्वेश्चन और दो तकिए--

हमें इस तस्वीर के अंदर एक बड़ी बड़ा डस्टबीन रखा नजर आ रहा है गाड़ियों के पास--

बाईके हमें खड़ी हुई नजर आ रही हैं स्कूटर भी खड़ा है।

ये बड़ी सी लाल और सफेद बिल्डिंग जिसके अंदर हमें खिड़कियां भी बनी हुई नजर आ रही है।

हमें लाल और पीला ये टाइल्स लगा हुआ दिखाई दे रहा है रास्ता पूरा--

अंदर हरे भरे पेड़ हमें लगे हुए नजर आ रहे हैं इसमें एक जगह सीढ़ी रखी हुई।

और जमे हुए हमें कपड़े रखे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लहंगा साड़ी हैं।

और सामने परदे लगे हुए है लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं पंखे लगे हुए हैं और लाइटें --

काउंटर पर भी रखा है और ये बॉक्सेस में भी रखा दिखाई दे रहा है।

जमीन पर लाल हमें कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है कालीन--

अह हमें लोहे की जाली लगी हुई दिखाई दे रही है।